यहां बड़ा सा हॉल दिख रहा है जिसमें कुर्सियां रखी हुई है दीवार पे एल_सी_डी लगा हुआ है कूलर है।

अगल-बगल पेड़-पौधे नजर आ रहे है बॉन्डरी भी नजर आ रहा है।

यहाँ पे बहुत बड़े एरिया में झाड़ियां और पेड़ दिख रहे हैं और आसमान भी साफ लग रहा है।

इधर मिट्टी में छोटे छोटे घांस दिख रहे हैं और छोटे बड़े पत्थर भी दिख रहा है।